यह दुकान विजय पुस्तक भंडार की है यहाँ दो केरम बाहर टंगी हुई है दो बल्ला बाहर टंगी हुई है।

यह फोटो खेलते हुए लड़कों की ह | लड़के फुटबॉल से खेल रहे हैं |

एक पैशन प्रो गाड़ी खड़ी। बाकी आगे एक स्कूटी खड़ी। वा में दो एक मोडा है और एक आदमी बैठो। बाकी बगल में एक टेम्पो जा रही। सामने की तरफ घर --